यह एक हरा भरा मैंदान है इसमें हरी-हरी घास है पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और हरी घास में एक बाइक भी खड़ी हुई है।

ये एक क्लास रूम है। इसमें बोहत सारी सीटें पड़ी हुई हैं। दो खिड़कियां नजर आ रही हैं।

इसमें लेटर बॉक्स भी नजर आ रहा है और अंदर एक महिला भी है और इसमे करोना का एक चैट भी टंगा हुआ है जिस पे लिखा है करोना से बचें।

एक टी-शर्ट और पैंट पहन रखी है बहुत सारे कपड़े नजर आ रहे हैं। प्रेस की डोरी भी फिरोजी रंग की नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारे लोग जमा हैं और बरसात का मौसम है। बारिश हो रही है। काफी लोग छतरियां लगाये हुये हैं जो काफी रंग बिरंगी हैं। हरे-हरे पेड़ भी --

ये बदायूं में है। ये बोहत इसके गेट की सजावट बोहत खूबसूरत नजर आ रही है। लोग भी आ रहे हैं जा रहे नजर आ रहे हैं।

और लाइटे भी जल रही है जो बहोत सुंदर दिखाई दे रही है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है। गेट के ऊपर उमा पैलिस लिखा हुआ है।

ये हाथ में चाय का कप है। इसमें चाय है और इसमें नाइसकेफ लिखा हुआ है। सुबह का टाइम है।

यह बदायूं का रोजा है जो सवाजपुर में स्थित है इसमें सुंदर-सुंदर नजर आ रहा है यह लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है।

बगीचा है। सामने ऊपर आसमान भी नज़र आ रहा है और इसमें थाम है। खिड़कियां बिल्डिंगों में खिड़कियां भी नज़र आ रही हैं।

यह एक सब्जी की दुकान है। इसमें बोहोत सारी सब्जियां रखी हुई हैं जैसे शिमला मिर्च भिंडी तुरैया।

एक लेडिज़ भी है जो बुर्का सफेद रंग का बुर्का ओढ़े हुए हे । काफी सारी दुकानें लगी वी हैं जो लोग सामान खरीद रहे हैं।

ये एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसके कई खिड़कियां नजर आ रहीं हैं और इसके आस-पास छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुएं हैं।

सीट भी है जिसपे लोगों के बैठने के लिए और पेड़ हरे-हरे हैं। बोहोत सुंदर फूल नज़र आ रहे हैं और काफी लंबा रोड नज़र आ रहा है।

बहुत सारी मूर्तियां नजर आ रही हैं जो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

यह बैंक ऑफ़ बड़ौदा बैंक है।

इसमें आ सामने बाइके नजर आ रही हैं और इसपे लोग भी बैठे हुए हैं आस-पास बिल्डिंग भी है।

ये ए बड़ा सा हॉल है। इसमें बैठने के लिए सोफ़े पड़े हुए हैं जिसपे लाल औ सफेद रंम् क् रंग के --

नीला आसमान नजर आ रहा है और एक बड़ा सा खम्बा भी इसके आस -पास नजर आ रहा है।

बैंगन बोहोत सी सब्जियां नजर आ रही हैं। ये हॉल बोहोत खूबसूरत है। इसमें रैकों में बोहोत अच्छी-अच्छी सब्जियां रख हुई हैं और ये हो मॉल बोहोत सुंदर नजर आ रहा है।

यह एक कार्ड है इसपे त्रिशूल भी बना हुआ है जिसपे नमः शिवाय लिखा हुआ है श्री नीलकंठ।

महादेव का कार्ड है। इसमें भी छपा हुआ है और बोहोत सुंदर इसपे ए जो है ऊं आकृति बनी हुई है।

धूप भी दिखाई हल्की-हल्की धूप भी दिखाई दे रही है। पानी बोहोत साफ नज़र आ रहा है। पानी में हरे - हरे पत्त हरा - हरा पानी नजर आ रहा है।

किसी का रंग पीला है किसी का नीला रंग है किसी का लाल रंग है।